बहोत ही गहरा पानी है देख सकते है आगे बढ़ के बहोत ही प्यारा लग रहा देख सकते है।

सुंदर है और बहुत ही जबरदस्त--

हेलो गाइस देख सकते है ये शादी घर का डेकोरेशन है और ये कॉलेज वैकशन यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे ये दीदी लोग बहुत ही खुश है।

हेलो गाइस देख सकते है ये जिम सेंटर है और काफी बड़ा जिम सेंटर है इसमें बहोत सारे इन कोई-कोई भाई डंबलस उठा रहे कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई मार रहा है देख सकते है।

छोटे-छोटे पेड़ है प्यारे-प्यारे बच्चे लोग भी इस पत्थर को यहाँ और यहाँ का भी मोतीजा बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिल रहे हैं।